जो हम किसी को गिफ्ट देने के काम में आ सकते हैं यहाँ पे ये सेल होते हैं ये इसकी शॉप है।

ब्रेड खाने की चीज जैसे ब्रश हो गया टूथब्रश बर्तन धोने का कपड़े धोने का साबुन--

सो सकते हैं वहां पे नीचे टेबल कुर्सीया रखी हुई है जहां पे वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं।

बहोत लोग यहाँ पे अं बहोत अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं जैसे यहाँ पे बहोत अच्छी फै फैसिलिटी --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

ये ऑक्सीजन गार्डन है यहां पे लोग--

अच्छे तरीके से कॉफी दी जाती है जिसमें--

ये वो बहुत सारे फ्रूट्स और एक--

बच्चा यहां पे सब्जी बेच रहा है रेड कलर की शर्ट में पहने हुए यहां पे एक बच्चा खड़ा हुआ है जो सब्जी बेच रहा है।

ऊपर पेड़ पौधे भी हैं नीचे बहोत सारे लोग हैं जो नहा रहे हैं जो लोग खड़े भी हैं फोटो खिंचवा रहे हैं यहां पे बहोत सुंदर सा नजारा देखने--

अं आ रहा है यहां पे बहुत सारे लोग नहा भी रहे हैं।

यहां पे एक मंदिर है जो ऊपर में--

यहाँ पे ये बहोत सुंदर सा नृत्य सीखा रही है जिसे बच्चे लोग सिख के अच्छे से--

जो एग्जीबिशन में काम आएगी जो जो इन्होंने यहां पे ब्लू एंड येलो एंड ऑरेंज कलर का घर बनाया हुआ है।